अलग अलग तरीके की गैस की चिमनीयां लगी हुई है उसे व्हाइड और पिंक बलून से डेकोरेट किया गया है।

ये किसी घर के छत का कंस्ट्रक्शन एरिया दिख रहा है।

होजरी की शॉप दिखाई दे रही है।

रैक में कुछ चीजें तय की हुई हैं।

गाय के गले में एक रस्सी बंधी हुई--

ग्रीन कलर का गेट लगा हुआ--

कुछ लोग ग्रुप में बैठे हैं सामने मकान दिख रहे हैं।

विंडो के यहां एक रेड कलर की शर्ट पहने हुए आदमी काम कर रहे हैं। साइड में मशीनस लगी हुई है।

हॉल में काउच रखा हुआ है। दो बड़ी बड़ी सोफा चेयर रखी हुई है।

बंगले में सीढ़ियां ऊपर जा रही है।

ये एक कारखाना दिख रहा है।

वहां एक दो पंडित जी खड़े हैं जो पूजा करवा रहे हैं।

सोफा के पीछे कर्टेन्स लगे हुए है नीचे कार्पेट बिछा हुआ है।

रोड पे एक बहु मंजिला इमारत है।

बोहोत ही पुराना पहाड़ दिख रहा है।

पेड़ पौधे दिख रहे हैं वही एक खुला सा ग्राउंड दिख रहा है।

ऊपर ए_सी लगा हुआ है साइड में ब्लू कारपेट है।

ब्लैक कलर की रॉड पड़े हुए--

वहीं पर कलरफुल अक्षरों पे लिखा हुआ है।

जूते रखे हुए हैं एक इसमें टी शर्ट्स भी लगी हुई है।

एक छोटी सी जगह के ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक --

ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई है और एक लड़के ने ब्लू जींस और ब्लू चप्पल पहनी हुई है।

सैमसंग का शोरुम है वही होलिका दहन--

हॉस्पिटल का रिसेप्शन दिखाई दे रहा है रिसेप्शन पे एक आदमी खड़ा है।

रेस्टोरेंट का नाम है मनसा मिडवे फैमिली रेस्टोरेंट एंड होटल ।

ये एक फैक्ट्री दिख रही है। ये फैक्ट्री मेटल की है जिससे --